ये यहां पे देख सकते हो यहां पे ये मछली दिख रही हैं।

टेबल रखी हुई है और यहां पे चार चेयर रखी हुई है यहां पे।